ये एक जिम है जहाँ एक आदमी एक ट्रेडमिल पे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है जो की --

और यहाँ का गार्डन में फूल जो है इस गार्डन की शोभा को और बढाता हुआ न दिखाई दे रहा है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दूकान लग रही है जहाँ पर एक शॉप कीपर भी दिखाई दे रहा है।

और शायद यहाँ मैच हो रहा है जो की सभी लोग बैठ करके देख रहे है और बैटिंग टीम बैठ करके मैच का लुफ्त उठा रही है।

और विश्व आत्मविश्वास बड़ा रही है प्लेयर्स का की वो अच्छे से खेले।

और संभवता वहां पास से कुछ पैसे निकाल करके या फिर कुछ करके आ रहे होंगे।

ये किसी का घर है जहाँ पे स्लेब पड रहा है सायद।

पे फी पद रहा है और यहाँ पे काफी करमचारीयाँ कर्मचारी काम कर रहे है।

यह एक किराने की दूकान है जहाँ पर सामने एक फ्रिज है और काफी सारे ठंडे की बोतल रखे हुए है यहाँ पर और ये सामने भीम यु_पी_आई है जोकि --

यह चंद्रपुर शहर महानगरपालिका की जगह है जिसके बगल में एशियन पेंट की दूकान भी नजर आ रही है वहां पास काफी ढेर सारे पेंट के डिब्बे भी दिखाई दे रहे है।

सामने जे.सी.बी. खड़ीं हुई है जोकि गड्ढा करने के काम आ रही है और गड्ढा खना जा रहा है उससे।

ये एक रेस्टोरेंट लग रहा है जिसकी सीलिंग सफ़ेद कलर की है और यहाँ एक टेबल है जिसके अगल बगल चेयर लगे हुए है यहाँ पर संभवता लोग खाना खाने आ सकते है सामने एक मेनू भी रखा गया है जिस--

नमन के अनुसार जो आप आर्डर करना चाहे आर्डर कर सकते है।

यहाँ पास मुहे काफी चीजे सामान दिखाई दे रहे है और सत्तर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

रोड बना हुआ है पथ्थरों का भिन्न विभिन्न विभिन्न पथ्थरे लगे हुए है काफी सुन्दर लग रहा है।

ये संभवता शाम का दृश्य है और यहाँ पर काफी सारे बसे दिखाई दे रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है यह बस स्टॉप है।

और एक निडन नीली सी नदी दिखाई दे रही है जोकि इस जगह की शोभा को और बढ़ाते हुए नजर आ रहा है।

रोड दिखाई दे रहा है जहाँ पर लोग जॉगिंग करने या फिर दोड़ने कर दोड़ते भागने आते है अपने अ स्वस्थ को अच्छा रखने के लिए।

ये कॉलेज का कोई एनुअल फंक्शन है जिसमें सारी बच्चिया और --

और फंक्शन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो ये वाला।

यह संभवता एक मिष्ठाण की दुकान हो सकती है जहाँ विभिन्न प्रकार के मिष्ठाण मिठाई दिखाई दे रहे है और नमकीन भी दिखाई दे रही है।

बॉडी बिल्डिंग वगेरा कर सकते है एक ट्रेडमिल है जहाँ पास एक लड़का खड़ा होकर के दोड रहा है और एक युवक अपनें हाथ को --

यह मदर टेरेसा बुक एजेंसी है जहाँ पास काफ़ी ढेर सारे किताबें रखी जाती है और लोग यहाँ पास --